यहाँ पर सड़क दिखाई दे रही है उसके पास में एक छोटा सा स्टाल है जो चाय के टपरी के समान है एक छोटा कुत्तों छोटा कुत्ता खड़े हुए है पास में एक छोटा का मकान है जो ईंट से बना हुआ है और उसपे हल्का से कलर किया हुआ है।

हमारे सामने एक खेत है जिसमें बहुत सारी घास दिखाई दे रही है यह घास यह फसल बड़ी-बड़ी हो चुकी है आस-पास में छोटी-मोटी झाड़ियां है।

बस में जाने की कोशिश कर रहे है कुछ उसके आस-पास खड़े हुए है।

तीन-चार पुरुष और खड़े हुए हैं एक ए_सी लगा हुआ है।

यहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसपर एक लाल और सफेद कलर का बैनर लगा हुआ है।

साथ में एक दो शटर गेट दिखाई दे रहे है दो पुरुष खड़े हुए है साथ में बहुत सारी बाइक और एक्टिवा सामने खड़ी हुई है।